और साथ ही में एक खिड़की भी है जिसके ऊपर लाइट है तथा साथ ही में स्विच भी है।

ड्रिंक है और साथ ही में चाबियां रखी गई है टेबल परतथा

फीस शॉप नजर आ रही है जहाँ काफी फिशेस रखी हुई है साथ ही में उन्हें --

कार मैकेनिक नज़र आ रहा है जो की सफेद रंग की--

तथा गाड़ी का शीशा भी खुला हुआ है साथ ही में काफी और गाड़ियां भी मौजूद है।

पहाड़ भी है तथा नदी के ऊपर बादल दिखाई दे रहे है पर मौसम साफ है।

हाथ में झाड़ू है तथा कई लोगो ने अपनी चप्पलें अलग से दूसरी तरफ--

साथ ही में जेसीबी भी है और काफी बाइक्स खड़ी है और साइकिल भी खड़ी है।

पीले रंग का ऑटो खड़ा है जिसके पीछे लाल रंग की मशीन रखी हुई है।

तथा साथ ही में नदी में कुछ सामान भी रखा गया है तथा इसे रस्सियों के साथ बांधा गया है ।